सब अपने-अपने कुर्सी पर बैठे हैं और बोर्ड की तरफ देख रहे है।

लोग बाहर खड़े हैं और इस में सजाया गया है फूलों --

हमारे सामने एक जिम का दृश्य है।

आमने-सामने एक थीअटर का पोस्टर सब देख रहे हैं।

हम अपने सामने एक बोहोत शान्त सा दृश्य देख रहे हैं।

इसे देख के कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है दे --

इसमें देख रहे हैं कि बहोत बड़ा-सा किला है।

एक साइड पे यहाँ प्याज की भरी-भरी बड़ी-बड़ी बोरियाॅ रखी हुई हैं। एक --